यहां पर दो आदमी बाहर की साइड में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आगे कुछ मोटरसाइकिल से भी रखी हुई है।

नाम का आप पर लाइट जगी हुई नाम दिख रहा है यहां पे एक तीन चार ट्यूबलाइट की बड़ी रोशनी भी दिखाई दे रही है यहां पे--

यहां पर रेलवे स्टेशन का फोटो दिखाया गया है जिसमें पटरी दिखाई दे रही है रेल नहीं है ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

पीछे पेंटिंग्स में मंदिर वंदिर भी दिखाए गए हैं यहां पे कुछ यात्री है जिनके हाथों में बैग है।

यह एक स्कूल दिखाई गई है जिसके आगे दो पीले कलर के बसे भी खड़ी है।

बाहर के साइड में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है और यहां पे सुंदर पेड़ पौधे और भी लगाए गए हैं।

लड्डू गोपाल जी का मंदिर बना हुआ है यहां ऊपर जल से चढ़ाने के लिए लगा हुआ है।

जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं यहां पर बहोत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं।

यहां पर कुछ घूमने के लिए बनाया गया है जहां पर लोग देखने के लिए आये हुए है।

यहां पर लेडिज बॉयस दोनों दिखाई दे रहे हैं यहां पर रंग बिरंगी लाइटों में सुंदर ऊपर छतरियां बनाई गई है।

यहां बहोत सारे कपड़े और रखे हुए हैं अलमारी और बनी हुई है यहां पे--

लोग बाहर से पर देख रहे हैं दो मोटरसाइकिल्स भी खड़ी है यहां पर पेड़ पर लाइटे लगी हुई हैं।